इधर कुछ कार भी है और कुछ बिजली के तार भी हैं यो देगी वो एक पीछे उसके भी गाड़ी --

यह देखिये यह एक बाजार है। यहाँ पर फल फ्रूट बिच रही हैं। पपीता भी है। अंगूर भी है।

के ऊ आगे कुछ कपड़े की पट्टी भी लगी हुई है उसके पीछे ईंटो का घर है उधर एक जंगला भी है उधर कुछ घास से भी लग रहे है उधर के जंगला भी दिख रहा है।

यहां देगिए की ह दुकान फल-फ्रूट की है। यहाँ पर फल-फ्रूट जैसे अंगूर जैसे संतरे ये होते हैं न जैसे केले यहाँ पर सब फल फ्रूट हैं।

ई दरबा बुक दरवाजा है और कुछ पेड़ भी हैं। उधर नीचे भी कुछ दिखाई दे रहा है।

इसमें एक नाव सी दिखाई दे रही है| इसमें रोड सा दिखाई दे रहा है।

गाड़ी खड़ी हुं है। उधर से एक बुध आ रहे है। ऐसे एक बुध एको एक टॉवर जैसा दिखाई दे रहा है। उधर में दाट करेंट तार है।